क्या हम यह कह सकते है की यह एक बहोत सुंदर तस्वीर है जहाँ पर बहोत लम्बा सा यह गुंबद दिखाई दे रहा है आजू-बाजु बहोत सारी भीड़ भी दिखाई दे रही है सब लोग सेल्फी लेते हुए भी नजर भी नजर आ रहे है।

इस पिक्चर को देख के यह हम कह सकते है की यह एक बोहोत ही सुन्दर सी पिक्चर नजर आ रही है जोकि कमाल--

इस पिक्चर को देख कर हम यह कह सकते है की यह एक डैम का पानी काफी शांत नजर आ रहा है और --

इए पिक्चर में देख कर हम ये बता सकते है ये एक काफी कमाल का है और यहाँ पर टाटा सूमो को उपर रख दिया

पिक्चर को देख कर हम देख सकते है की यह एक काफी शानदार सी पिक्चर है यहाँ पर एक डेम दिखाई दे रहा है डेम का पानी काफी शांत नज़र आ रहा है क्योंकि डेम अभी बंद है और थोड़ा बहुत पानी है।

ऊपर से नीचे की और ली गई यह तस्वीर काफी मन मोह लेने वाली तस्वीर खींची गई है।

पिक्चर को देखकर हम कह सकते है की यहां पे काफी सारे फूल उगाये गए है और ये हरे और पीले रंग के मिक्सिंग में यह फुल जायदा अच्छे और आकर्षित नजर आ रहे हे यहां पे मेरी गोल्ड के फुल भी दिखाय दे रहे है।